यहां पर मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया गया है पूरी मंदिर में लाइटिंग और झलरे लगी हुई है कुछ झलरो का रंग नीला है तो कुछ झलरों का रंग गुलाबी है और बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

सभी बच्चे किताब में पढ़ रहे हैं और एक बच्‍चे ने मास्क पहना है एक बच्चा वाइट कलर की शर्ट पहने बैठा है और कुछ लड़कियां नीली कलर की टी-शर्ट पहनी हैं।